बहुत ही छोटे-छोटे पत्थर भी दिखाई दे रहें हैं यह पहाड़ के नीचे बहुत हीं सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहें हैं।

यह भवन के बाहर पेड़ भी लगे हुए हैं। यह भवन काफी सुंदर --

यह मछली की दुकान है । यह दुकान बहुत बड़ी हैं । यह दुकान काफी सुंदर से सजाए गए हैं । फूलों से एवं बैलूनो से भी सजाए गए हैं । यह मछली छोटी एवं बड़ी मछलियाँ भी है।

के जगह पर एक जेंट्स एक लेडीज भी खड़े है जो की चाबी दे रहे --